जैसा की हम देख सकते है सामने हमको घर दिख रहा है जो की बहुत अच्छा दिख रहा है जो की बहुत ही सुंदर दिख रहा है पेड़ दिख रहे है जो की बहुत ही अच्छे दिख रहे है पहाड़ी दिख रही है जो की सुंदर दिख रही है लाइट के खंबे--

गोल्डेन कलर का फव्वारा दिख रहा है जो की बहुत ही सुंदर दिख रहा है सफ़ेद कलर के पाइप लगे हुए दिख रहे है ईस पे गोल्डन लाइट लगे दिख रहे है पानी ऊपर से नीचे आ रहा है जो की बढ़िया दिख रहा है हरे हरे पेड़ दिख रहे है जो की बहुत ही सुंदर बहुत की प्यारे--

इसमे गुलाबी कलर की माला दिख रही है सफ़ेद कलर की माला दिख रही है हरी हरी पत्तियाँ लगी हुई है फीर पास मे गेंदों की माला दिख रही है जिसमे सिर्फ गेंदा लगा हुआ है पीछे हमको फ्लावोर्स के गुलदस्ते दिख रहे है जो की आधे आधे ही दिख रहे है।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

जैसा की हम देख सकते है सामने हमको बहुत सुंदर नजारा दिख रहा है बहुत ही बढ़िया हमको घर दिख रहा है जो हरा कलर का घर दिख रहा है जो की बहुत ही बड़ा दिख रहा है बहुत ही सुंदर दिख रहा है गेट लग हुआ दिख रहा है जो की काला कलर का दिख रहा है जो की बहुत ही प्यारा लग रहा है।